मुझे एक रैस्टौरेंट दिखाई दे रहा है। रैस्टौरेंट मे ऊपर बल्ब लटके हुए दिखाई दे रहे है और कॉफी के मग लटके हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे एक बारात जाती हुई दिखाई दे रही है ढ़ोल वाले दिखाई दे रहे है कुछ लड़के और लड़किया भी दिखाई दे रही है साइड मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे उपर एक रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है और उसमे कुमार लिखा हुआ है।

साथ मे साइड मे एक गेट दिखाए दे रहा है और एक ह ठेला वाला आता हुआ दिखाए दे रहा है साइकल वाला जिसमे कुछ रखा हुआ है साइड मे मोटरसाइकल साइकल --

मुझे एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है नदी के दोनों तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे है नदी का पानी काफी साफ दिखाई दे रहा है।

आदमी पहाड़ की तरफ देखता हुआ दिखाई दे रहा है बादल में से बदली बहती हुई--